और जो शीशे का बनाया हुआ उसका किनारा लाल कलर का दिख रहा है।

इसमें बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान के अंदर बहुत सारे चश्मे दिखाई दे रहे हैं।

चट्टान की आकृति में दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहा है।

जो की चट्टान कोई टुकड़ा हुआ है कोई बड़ा है।

इसमें सोफे का बैठने वाला दिखाई दे रहा है।

और पक्के का बना हुआ है सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

जो की लोहे का रैक बना हुआ है उस पर रखा हुआ है।

और इसमें बहोत पेटी दिखाई दे रही है।

पेट्रोल पंप के किनारे किनारा लगाया हुआ फूल दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें की रैक भी दिख रहा है।

इस दुकान का कलर हल्का पीला रंग का दिखाई दे रहा है।

और दीवार भी दिखाई दे रहा है।

जिस पर की पक्षी एक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह घर है जो कि घर के छत पर बहोत सारे बांस और प्लाई का लगा हुआ शटरिंग दिख रहा है।

गुलाबी कलर का रंग हुआ है।

और ऊपर सीटें जैसा छाया हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें दीवार भी दिखाई दे रहे हैं जो की दीवार में खिड़की भी दिखाई दे रही है।

जिसमें की कप पर बहोत सारा डिजाइन डाला हुआ है।

जोकि किसी पेड़ का फूला हुआ रंग गुलाबी दिखाई दे रहा है।

एक डब्बा खुल्ला हुआ दिखाई दे रहा है।

जोकि एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हैं और कोई फोटो खींचते हुए दिख रहे हैं और इसके फर्श पे लाल कलर का टपर बिछाया हुआ दिख रहा है।

इसमें फूल पौधे दिख रहे हैं और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और बरामदा का कलर पीला और लाल रंग का दिखाई दे रहा है।

और इस सजावट का पर्दे का कलर कुछ नीला और उजाला दिखाई दे रहा है।

बहुत पुराने महल दिखाई दे रहा है।

और इसमें बहुत सारा कपड़ा दिखाई दे रहा है।